पड़ी है लोहे सीमेंट रखी की गई है राइट साइड से एक ट्रक आ रहा है

ये एक गाँव की रोड गयी हुई है जोकि डामर वाली रोड है और लेफ्ट राइट साइड देखेंगे तो ढेर पड़े हुए हैं।

सामने से एक रास्ता गई हेगी जो की कच्ची है और यहाँ काफी सारा कचरा भरा हुआ है छोटी-छोटी घासे बिखरी पड़ी हैं पन्नी पड़ी है बहोत कुछ पड़ा है यहाँ पे।

ये एक मेन रोड गई हुई है जो की देखेंगे की सामने लोहै के पाइप लगे हुए हैं गेट टाइप के रेड कलर पाइप लगे हुए हैं लेफ्ट में देखेंगे दीवार उठी है उसपे बहोत सारी वायरें लगी हुई हैं।

ये एक चर्च की मीटिंग है जो की बीच रास्ते में एक आदमी खड़ा है और --

निचे एक बाइक खड़ी हुई है बाइक के बाजु से एक दरवाजा हेगा और दरवाजे के बाजु से दो खिड़कियां दिख रही हैं उसके बाजु से एक पाइप है लेफ्ट में एक छोटी सी खिड़की दिख रही है।

ये एक सरकारी विभाग है जहां पे देखेंगे की व्हाइट कलर की ब्लीडिंग है पूरी व्हाइट पेंट हुआ है और उसमें बहोत सारी खिड़कियां हैं।

और ये सामने देख रहें हैं आप एक छोटा सा टिन शेड वाला घर बना हे उसके निचे काफी लम्बे-लम्बे पाइप पड़े हुए हैं उन घर के लेफ्ट में घासें उगी हुई हैं --

और पीछे दो खंभे दिख रहे हैं और जो की काफी ऊँचे हैं और उसमे वायर लटक रही है।